उसे सामने कुछ स्टूल दिखाई दे रहे हैं जो इसमें और कुछ लाल करके पैकेट रखे हैं कुछ नीले कलर के पैकेट दे --

उसमे ऊपर खुला असमान भी दिखाई दे रहा है। रंग-बरंगी सी किनारों पर ऑरेंज कलय की झाड़ियाँ दिखाय दे रही है। रूढ बना हुआ कुछ आदमी बैठे हुए दिखाय दे रहा है।

और आदमी आ जा रहे हैं। रात का नजारा है। लाईट जल रही हुई है और एह आदमी जा रहा है। नीचे इसका फर्श दूबा जैसा लग रहा है और कुछ आदमी खड़े हुए हैं। कुछ में बात करे रहे --

अतिसुन्दर सीन हैं ये पार्क का सीन हैं इसमे आई हुई हैं दो तीन छतरी लगी हुई हैं छतरी का रंग पीला नीला हरा दिखाई दे रहा हैं।

ऐं रात का नजारा देखने को मिल रहा है इसकी दीवाल इसमें हॉल है इसकी दीवाल और मटमैंले रंग की पुती हुई है इसमें एक गेट दिखाइ दे रहा है।